साइकिल लगे हुए हैं एक दो बंदे हैं खड़े हुए हैं यहां पर--

घर दिखाई दे रहा है बहुत ब बड़ा घर है बनाया गया है कांच का बहुत अच्छा है यहां पर --

यहां प बहुत बड़ा दुकान है यहां पे इसके अंदर बहोत सारे सामान मिलते है होटल का दुकान है इसके अंदर--

दुकान है लगा हुआ है यहां पे दुकान है बहोत सारे समान मिलते चीजे वगैरे यहां पे होटल कुछ खा रहे है।

यहां प बहोत ऊंचा पहाड़ दिखाई दे रहा है बहोत ऊंचा चारों ओर से पहाड़ दिखाई दे रहा है।

यहां पे एक पेड़ पौधे दिखाई दे रे पानी दिखाई दे रहे बहोत बड़ा पानी है सुंदर है।

यहां पर एक दुकान है जैसे यहां पे--

पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं पार्क है घास दिखाई दे रहे है अंदर बहुत सारे बैठने वाले हैं।

यहां पर एक पोस्टर दिखाई दे रहे हैं दो लड़के--

बहुत सारे कुछ सामान अंदर चेयरे वेयरे सब मिलता है।

यहां पर एक बड़ा सा दुकान है इसमें बहुत सारे किताबें मिलते--

खम्बे लगा हुआ है यहां पे एक झोला टंगा हुआ है पुतले का--

बहुत सारे किताब मिलते हैं यहां पे शेटर बंद भी दिखाई दे रहे हैं अंकल बैठा भी है।

घर है यहां पे कुछ काम हो रहा है यहां पे जे_सी_बी से एक कोड़ाई हो रहा है एक मट्टी निकल रहा है।

एक बहोत बड़ा स्कूल दिखाई दे रहा है यहां पे बहोत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रहा है यहां पे एक बस दिखाई दे रहे --

पोस्टर भी लगा हुआ है लाइटें वगैरह लगे हुए हैं पेड़ पौधे लगे हैं यहां पर।

और पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है घर भी--